और उसमें मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है और इसमें मतलब चलने लायक जगह है नहीं थोड़ा भी नहीं है। मतलब थोड़ा है दुकान से भरा हुआ है।

ऑटो में भी सवार बहुत सारे पैसेंजर हैं और यह ड्राईवर चला रहे हैं और इस साइड पेड़ बहुत लगी हुई है और इस साइड से भी एक --

और उस साइड से शायद पूरा खुला ही हुआ है।

और इ सैलून में बल्ब उल्ब है।

और उस साइड थू बहुत थोड़ी जगह में पानी भी है।

और इस साइड रूम में पूरा टाइल्स लगी हुई है इस साइड परदी ही पर्दा है |